रेड कवर लगा हुआ सोफा दिखाई दे रहा है।

ये एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के किनारे में--

इस नदी के ऊपर ब्रिज भी बना हुआ हैं।

गेट के बाहर तीन बाइक लगी हुई है एक बाइक में हैंडल में हेलमेट भी फांसा हुआ है।

इंग्लिश हिंदी और उर्दू में लिखा हुआ है बेतिया पीला कलर का बिल्डिंग है चार पांच लोग खड़े है।

ये कोई ये कोई सरकारी बिल्डिंग जैसा लग रहा है।

टाइल्स पे बैलून लगा कर सजाया हुआ है।

दो खिड़की हैं एक ए सी लगा हुआ है।

पेट्रोल पंप के बाउंड्री के बाद एक घर भी दिखाई दे रहा है कुछ छोटे छोटे पेड़ भी हैं।

उसके बाजू में एक हेम्योपैथिक का क्लीनिक भी है जिसका नाम नेशनल हेम्योपैथिक क्लिनिक है।

एक आदमी बीच में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।